इस तस्वीर में कई हिरने दिखाए गए हैं।

इस तस्वीर में कई पेड़ भी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में दिन का दृश्य दिखाया गया है।

इस तस्वीर में घर के आगे एक रास्ता दिख रहा है।

इस तस्वीर में कई लोगों को काम करते हुए दिखाया गया है।

इस तस्वीर में ठंड के समय का दृश्य दिखाया गया है।

इस तस्वीर में भगवान के कई मूर्तियां दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में एक आश्रम दिखाया गया है।

इस तस्वीर में आश्रम का रंग नील और सफेद है।

इस तस्वीर में कई बिल्डिंग दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में एक ग्रोसरी का दुकान दिखाया गया है।

इस तस्वीर में एक आदमी अह खड़ा हुआ दिख रहा है।

इस तस्वीर को रात के समय में लिया गया है।

इस तस्वीर में कई प्रकार के सब्जी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में एक बड़ा पहाड़ दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक आदमी लाल टी शर्ट पहना हुआ दिख रहा है।

इस तस्वीर में दिन का दृश्य दिखाया गया है।

इस तस्वीर में कई पेड़ों को दिखाया गया है।

इस तस्वीर में एक मंदिर का सीढ़ी दिखाया गया है।

इस तस्वीर में कइ किताबे दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में गाड़ी सफेद रंग का दिखाया गया है।

इस तस्वीर में एक तार दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक नीले रंग का बैनर दिख रहा है।